वहाँ क्या नजारा है खुला आसमान चारों तरफ समुन्द्र पानी फैला हुआ है।

इस चित्त इस चित्र में एक चर्च है।

इस पिक्चर को देख के लग रहा है जैसे किसी की शादी हो रही हो मंडप सजाया हुआ हो।

फूल वाह हमारे जीवन में चारो तरफ खुशबु ही खुशबु फैला देते हैं जो हमारे जीवन को सुगंधित करते हैं।

और ये चीज पह पुरातन समय में गाँव में देखी जाती थी। आजकल भी बोहोत कम है।

यहाँ पे बहुत अच्छे पेड़-पौधे फल फलों के नहीं लेकिन पेड़-पौधे फूलों के अच्छी तरह से लगाए हुए हैं। चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है।

इस चित्र में ऐसा लग रहा है जैसे घर बनाया गया हु हुआ हो और घर के सामने बहोत ही सुन्दर पेड़ खुली जगह और बाउंड्री की गई हो जो बहोत ही सुन्दर है।

शहर यहाँ पे बहुत सुंदर-सुंदर इमारतों का निर्माण किया हुआ है जो की शहरो मे ही होता है गांवों मे तो घर बनाये जाते है और शहरों मे बल्डिंगस बनाई जाती है।